मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है
आज जब दो गज की दूरी एक अनिवार्य जरुरत बन गई है तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है
लेकिन इतने लम्बे समय तक एक साथ रहना कैसे रहना समय कैसे बिताना हर पल खुशी भरी कैसे हो तो कई परिवारों को दिक्कतें आईं और उसका कारण था कि जो हमारी परम्पराएं थी जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी उसकी कमी महसूस हो रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार है जहाँ से ये सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी हर परिवार में कोईनकोई बुजुर्ग बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियाँ सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा भर देते हैं
हमें जरुर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधायें बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण हैं और जब नहीं होती हैं तो कितनी कमी महसूस होती है
ऐसी ही एक विधा जैसा मैंने कहा कहानी सुनाने की कला स्टोरी टेलिंग
साथियो कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता
व्हेरे थेरे इस आ सौल थेरे इस आ स्टोरी
कहानियाँ लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं उसे प्रकट करती हैं
कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है तब देखें
मैं अपने जीवन में बहुत लम्बे अरसे तक एक परिव्राजक आ वांडरिंग एसेटिक के रूप में रहा
घुमंत ही मेरी जिंदगी थी
हर दिन नया गाँव नए लोग नए परिवार लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरुर बात करता था और कभीकभी बच्चों को कहता था कि चलो भई मुझे कोई कहानी सुनाओ तो मैं हैरान था बच्चे मुझे कहते थे नहीं अंकल कहानी नहीं हम चुटकुला सुनायेंगे और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ यानि उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था
ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी
साथियो भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सागोई की एक समृद्ध परंपरा रही है
हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी है जहाँ हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है जहाँ कहानियों में पशुपक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गयी ताकि विवेक और बुद्धिमता की बातों को आसानी से समझाया जा सके
हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है
ये धार्मिक कहानियाँ कहने की प्राचीन पद्धति है
इसमें कताकालक्षेवम् भी शामिल रहा
हमारे यहाँ तरहतरह की लोककथाएं प्रचलित हैं
तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है
इसे विल्लू पाट् कहा जाता है
इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है
भारत में कठपुतली की जीवन्त परम्परा भी रही है
इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियाँ एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है
मैं देख रहा हूँ कि कई लोग किस्सागोई की कला को आगे बढाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं
मुझे gaathastoryइन जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं
अमर व्यास ईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद विदेशों में चले गए फिर वापिस आए
इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे है
कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं
वैशाली व्यवहारे देशपांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोकप्रिय बना रहे हैं
चेन्नई की श्रीविद्या वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी है वहीँ कथालय और थे इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नाम की दो वेबसाइट भी इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य कर रही हैं
गीता रामानुजन ने kathalayaorg में कहानियों को केन्द्रित किया है वहीँ थे इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क के ज़रिये भी अलगअलग शहरों के स्टोरी टेलर्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है आई बेंगलुरु में एक विक्रम श्रीधर हैं जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं
और भी कई लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे आप ज़रूर उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करेंआई
आज हमारे साथ बेंगलुरु स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की बहन अपर्णा अथरेया और अन्य सदस्य जुड़े हैं
आईये उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव
नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी
कैसे हैं आप
मैं ठीक हूँ
आप कैसी है अपर्णा जी
बिल्कुल बढ़िया सर जी
सबसे पहले मैं बैंगलूर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे जैसे कलाकारों को इस मंच पर बुलाया है और बात कर रहे हैं
और मैंने सुना है कि आज तो शायद आप की पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है
जी जी बिल्कुल
बिल्कुल सर
तो अच्छा होगा की आप की टीम का परिचय करवा दें
ताकि मन की बात के जो श्रोता हैं उनको परिचय हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे है
मैं अपर्णा अथरेया हूँ मैं दो बच्चों की माँ हूँ एक भारतीय वायुसेना के अफसर की बीवी हूँ और एक पैशनेट स्टोरीटेलर हूँ सर
स्टोरीटेलिंग की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी
तब मैं सीएसआर प्रोजेक्ट्स में वॉलंटरी काम करने के लिए जब गई थी तब हजारों बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने का मौका मिला और ये कहानी जो मैं बता रही थी वो अपनी दादी माँ से सुनी थी
लेकिन जब कहानी सुनते वक़्त मैंने जो ख़ुशी उन बच्चों में देखी मैं क्या बोलू आपको कितनी मुस्कराहट थी कितनी ख़ुशी थी तो उसी समय मैंने तय किया कि स्टोरीटेलिंग मेरे जीवन का एक लक्ष्य होगा सर
आपकी टीम में और कौन है वहाँ
मेरे साथ हैं शैलजा संपत
नमस्कार सर
नमस्ते जी
मैं शैलजा संपत बात कर रही हूँ
मैं तो पहले टीचर थी उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तब मैंने थिएटर में काम शुरू किया और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संतृप्ति मिला
प्रधानमंत्री धन्यवाद
मेरे साथ सौम्या है
नमस्कार सर
नमस्ते जी
मैं हूँ सौम्या श्रीनिवासन
मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ
मैं जब काम करती हूँ बच्चे और बड़े लोगों के साथ उसमें मैं कहानियों के द्वारा मनुष्य के नवरसाओं को जगाने में कोशिश करती हूँ और उसके साथ चर्चा भी करती हूँ
ये मेरा लक्ष्य है हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीटेलिंग
नमस्ते सर
नमस्ते जी
मेरा नाम अपर्णा जयशंकर है
वैसे तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी नानानानी और दादी के साथ इस देश के विभिन्न भागों में पली हूँ इसलिए रामायण पुराणों और गीता की कहानियाँ मुझे विरासत में हर रात को मिलती थी और बैंगलूर स्टोरीटेलिंग सोसाइटी जैसी संस्था है तो मुझे तो स्टोरीटेलर बनना ही था
मेरे साथ मेरी साथी लावण्या प्रसाद है
लावण्या जी नमस्ते
नमस्ते सर आई एएम एएन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर टर्न्ड प्रोफेशनल स्टोरीटेलर सिर आई ग्रेव यूपी लिस्टेनिंग टो स्टोरीज फ्रॉम माय ग्रैंडफादर
आई वर्क विथ सीनियर सिटिजेंस
इन माय स्पेशियल प्रोजेक्ट कॉल्ड रूट्स व्हेरे आई हेल्प थेम डॉक्यूमेंट थीर लाइफ स्टोरीज फोर थीर फैमिलीज
लावण्या जी आपको बहुत बधाई
और जैसा आपने कहा मैंने भी एक बार मन की बात में सबको कहा था कि आप परिवार में अपने दादादादी नानानानी है तो उनसे उनकी बचपन की कहानियाँ पूछिए और उसको टेप कर लीजिये रेकॉर्ड कर के लीजिये बहुत काम आयेगा ये मैंने कहा था
लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक तो आप सबने जो परिचय दिया अपना उसमें भी आपकी कला आपकी कम्यूनिकेशन स्किल और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने अपना परिचय करवाया इसलिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ
थांक यू सिर थांक यू
अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का
क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एकदो कहानी सुनाएँ आप लोग
समूह स्वर जी बिल्कुल ये तो हमारा सौभाग्य है जी
चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की
राजा का नाम था कृष्ण देव राय और राज्य का नाम था विजयनगर
अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान
अगर उनमें कोई खोट बताना ही था तो वह था अधिक प्रेम अपने मंत्री तेनाली रामा की ओर और दूसरा भोजन की ओर
राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे कि आज कुछ अच्छा बना होगा और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियाँ खिलाते थे तुरई लौकी कददू टिंडा उफ़
ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते गुस्से में थाली फ़ेंक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया या तो कल कोई दूसरी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा
बावर्ची बिचारा डर गया
अब नयी सब्ज़ी के लिए वह कहाँ जाये
बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनाली रामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई
सुनकर तेनाली रामा ने बावर्ची को उपाय दिया
अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आये और बावर्ची को आवाज़ दिया
आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली तैयार कर दूँ
डरे हुए बावर्ची ने झट पट से थाली सजाया और राजा के लिए गरमागर्म खाना परोसा
थाली में नयी सब्जी थी
राजा उत्साहित हुए और थोड़ी सी सब्ज़ी चखी
ऊंह वाह क्या सब्जी थी न तुरई की तरह फीकी थी न कददू की तरह मीठी थी
बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था सब अच्छी तरह से चढ़ी थी
उंगलिया चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बुलाया और पुछा कि यह कौन सी सब्ज़ी हैं इसका नाम क्या हैं जैसे सिखाया गया था वैसे ही बावर्ची ने उत्तर दिया
महाराज ये मुकुटधारी बैंगन है
प्रभु ठीक आप ही की तरह यह भी सब्जियों का राजा है और इसीलिए बाकी सब्ज़ियों ने बैंगन को मुकुट पहनाया
राजा खुश हुए और घोषित किये आज से हम यही मुकुटधारी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं हमारे राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्ज़ी नहीं बनेगी
राजा और प्रजा दोनों खुश थे
यानि पहलेपहले तो सब खुश थे कि उन्हें नई सब्जी मिली है लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गये सुर थोड़ा कम होता गया
एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के घर में बैगन भाजा
एक के यहाँ कत्ते का सांभर तो दूसरे के यहाँ वांगी भात
एक ही बैंगन बिचारा कितना रूप धारण करे
धीरेधीरे राजा भी तंग आ गए
हर दिन वही बैगन और एक दिन ऐसा आया कि राजा ने बावर्ची को बुलाया और खूब डांटा
तुमसे किसने कहा कि बैंगन के सर में मुकुट है
इस राज्य में अब से कोई बैगन नहीं खायेगा
कल से बाकी कोई भी सब्ज़ी बनाना लेकिन बैंगन मत बनाना
जैसी आपकी आज्ञा महाराज कहके बावर्ची सीधा गया तेनाली रामा के पास
तेनाली रामा के पाँव पड़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद आपने हमारी प्राण बचा ली
आपके सुझाव की वजह से अब हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं
तेनाली रामा हॅसते हुए कहाँ वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश न रख सके
और इसी तरह राजा कृष्णदेवराय और मंत्री तेनाली रामा की कहानियाँ बनती रही और लोग सुनते रहे धन्यवाद
आपने बात में इतनी एक्जैक्टनेस थी इतनी बारीकियों को पकड़ा था मैं समझता हूँ बच्चे बड़े जो भी सुनेंगे कई चीजों का स्मरण रखेंगे
बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया और विशेष कोइंसिडेंस ऐसा है कि देश में पोषण माह चल रहा है और आप की कथा भोजन से जुड़ी हुई है
और मैं जरुर ये जो स्टोरी टेलर्स आप लोग हैं व और भी लोग हैं
हमें किस प्रकार से हमारे देश की नई पीढ़ी को हमारे महान महापुरुष महान माताएंबहनें जो हो गई हैं
कथाओं के माध्यम से उनके साथ कैसे जुड़ा जाए
हम कथाशास्त्र को और अधिक कैसे प्रचारित करें पॉपुलर करें और हर घर में अच्छी कथा कहना अच्छी कथा बच्चों को सुनाना ये जनजीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो
ये वातावरण कैसे बनाएं उस दिशा में हम सबने मिल करके काम करना चाहिए लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मैं आप सब को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
समूह स्वर धन्यवाद सर
कहानी के द्वारा संस्कार सरिता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना
मैं जब उनसे फोन पर बात कर रहा था इतनी लम्बी बात थी तो मुझे लगा कि मन की बात के समय की सीमा है तो मेरी उनसे जो बातें हुई है वो सारी बातें मैं मेरे NarendraModiApp पर अपलोड करूँगा पूरी कथाएँ ज़रूर वहाँ सुनिए
अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा अंश ही आपके सामने प्रस्तुत किया है
मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूँगा परिवार में हर सप्ताह आप कहानियों के लिए कुछ समय निकालिए और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ताह के लिए एक विषय तय करें जैसे मान लो करुणा है संवेदनशीलता है पराक्रम है त्याग है शौर्य है कोई एक भाव और परिवार के सभी सदस्य उस सप्ताह एक ही विषय पर सब के सब लोग कहानी ढूँढेंगे और परिवार के सब मिल करके एकएक कहानी कहेंगे
आप देखिये कि परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा रिसर्च का कितना बढ़िया काम हो जाएगा हर किसी को कितना आनन्द आएगा और परिवार में एक नयी प्राण नयी उर्जा आएगी उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं
मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूँगा हम आज़ादी के 75 वर्ष मनाने जा रहें हैं क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटीमोटी घटना से अब हमारी नयी पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं
मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस काम को करेंगे
कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बनें और अधिक प्रचारित हो और सहज बने इसलिए आओ हम सब प्रयास करें आई
मेरे प्यारे देशवासियो आईये कहानियों की दुनिया से अब हम सात समुन्द्र पार चलते हैं ये आवाज़ सुनिए
नमस्ते भाइयो और बहनों मेरा नाम सेदू देमबेले है
मैं वेस्ट अफ्रीका के एक देश माली से हूँ
मुझे फरवरी में भारत में विसित पे सबसे बड़े धार्मिक त्यौहार कुम्भ मेला में शामिल होने का अवसर मिला
मेरे लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है
मुझे कुम्भ मेला में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला
मैं विनती करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार फिर भारत विसित करने का अवसर दिया जाए ताकि हम और भारत के बारे में सीख सकें
है न मज़ेदार तो ये थे माली के सेदू देमबेले
माली भारत से दूर पश्चिम अफ्रिका का एक बड़ा और लैंड लॉक्ड देश है
सेदू देमबेले माली के एक शहर किता के एक पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं वे बच्चों को इंग्लिश म्यूजिक और पेंटिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं सिखाते हैं
लेकिन उनकी एक और पहचान भी है लोग उन्हें माली के हिंदुस्तान का बाबू कहते हैं और उन्हें ऐसा कहलाने में बहुत गर्व की अनुभूति होती है
प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद वे माली में एक घंटे का रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं इस कार्यक्रम का नाम है इंडियन फ्रीक्वेंसी ओन बॉलीवुड songs
इसे वे पिछले 23 वर्षों से प्रस्तुत करते आ रहे हैं
इस कार्यक्रम के दौरान वे फ्रेंच के साथसाथ माली की लोकभाषा बमबारा में भी अपनी कमेंटरी करते हैं और बड़े नाटकीय ढ़ंग से करते हैं
भारत के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम है
भारत से उनके गहरे जुड़ाव की एक और वजह ये भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस्त को हुआ था आई सेदू जी ने दो घंटे का एक और कार्यक्रम अब प्रत्येक रविवार रात 9 बजे शुरू किया है इसमें वे बॉलीवुड की एक पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बमबारा में सुनाते हैं
कभीकभी किसी इमोशनल सीन के बारे में बात करते समय वे स्वयं भी और उनके श्रोता भी एकसाथ रो पड़ते हैं
सेदू जी के पिता ने ही भारतीय संस्कृति से उनकी पहचान करवाई थी
उनके पिता सिनेमा थिएटर में काम करते थे और वहाँ भारतीय फ़िल्में भी दिखाई जाती थी
इस 15 अगस्त को उन्होंने हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी थी
आज उनके बच्चे भारत का राष्ट्रगान आसानी से गाते हैं
आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें और उनके भारत प्रेम को महसूस करें
सेदू जी ने जब कुम्भ का दौरा किया था और उस समय वे उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जिससे मैं मिला था भारत के लिए उनका इस प्रकार का जूनून स्नेह और प्यार वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे यहाँ कहा जाता है जो ज़मीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़ेसेबड़े तूफानों में भी उतना ही अडिग रहता है
कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण हैं
संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमख़म दिखाया है
साथियो देश का कृषि क्षेत्र हमारे किसान हमारे गाँव आत्मनिर्भर भारत का आधार है
ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी
बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है
मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियाँ मिलती हैं किसान संगठनों से मेरी बात होती है जो बताते हैं कि कैसे खेती में नएनए आयाम जुड़ रहे हैं कैसे खेती में बदलाव आ रहा है
जो मैंने उन से सुना है जो मैंने औरों से सुना है मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आप को बताऊँ
हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं उनका नाम हैं श्री कंवर चौहान
उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियाँ बेचने में बहुत दिक्कत आती थी
अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियाँ बेचते थे तो कई बार उनके फल सब्जी और गाड़ियाँ तक जब्त हो जाती थी
लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एसीटी से बाहर कर दिया गया इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ
चार साल पहले उन्होंने अपने गाँव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की
आज गाँव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं
उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी बड़ी रिटेल चैन तथा फाइव स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं
आज गाँव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से ढ़ाई से तीन लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं
इतना ही नहीं इसी गाँव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर पोली हाउस बनाकर टमाटर खीरा शिमला मिर्च इसकी अलगअलग वेरिएटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रूपये तक की कमाई कर रहें हैं
जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है अपने फलसब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है
अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है
फलसब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहें हैं धान गेहूं सरसों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ ज्यादा दाम मिले वहीँ पर बेचने की अब उनको आज़ादी मिल गई है
साथियो तीनचार साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था
इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली इसका उदाहरण हैं सरी स्वामी समर्थ फार्मरएस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये किसानों का समूह है
पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाज़ार खुद चला रहे हैं
इन बाज़ारों में लगभग 70 गाँवों के साढ़े चार हज़ार किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है कोई बिचौलिया नहीं
ग्रामीणयुवा सीधे बाज़ार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं इसका सीधा लाभ किसानों को होता है गाँव के नौजवानों को रोजगार में होता है
एक और उदाहरण तमिलनाडु के थेनि जिले का है यहाँ पर है तमिलनाडु केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कहने को तो कंपनी है हकीकत में ये किसानों ने मिल करके अपना एक समूह बनाया है
बड़ा लचीली व्यवस्था है और वो भी पांचछ साल पहले बनाया है
इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गाँवों से सैकड़ों मेट्रिक टोने सब्जियाँ फलों और केले की खरीद की और चेन्नई शहर को सब्जी कॉम्बो किट दिया
आप सोचिये कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया और मज़ा ये है कि बिचौलियोँ ना होने के कारण किसान को भी लाभ हुआ और उपभोक्ता को भी लाभ हुआ
ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है
उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोडयूसर इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियाँ ली और सीधे जा करके लखनऊ के बाज़ारों में बेची बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किये
साथियो गुजरात में बनासकांठा के रामपुरा गाँव में इस्माइल भाई करके एक किसान है
उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है
इस्माइल भाई खेती करना चाहते थे लेकिन अब जैसे ज्यादातर सोच बन गई है उनके परिवार को भी लगता था कि इस्माइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं
इस्माइल भाई के पिता खेती करते थे लेकिन इसमें उनको अक्सर नुकसान ही होता था
तो पिताजी ने मना भी किया लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाई ने तय किया कि वो तो खेती ही करेंगे
इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सौदा है वो ये सोच और स्थिति दोनों को बदलकर दिखायेंगे
उन्होंने खेती शुरु की लेकिन नये तरीकों से इनोवेटिव तरीके से
उन्होंने ड्रिप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं
वो ऐसे आलू उगा रहें हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है
इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ीबड़ी कंपनियों को बेचते हैं बिचौलियों का नामोंनिशान नहीं और परिणाम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं
अब तो उन्होंने अपने पिता का सारा कर्जा भी चुका दिया है और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस्माइल भाई आज अपने इलाके के सैंकड़ों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं
उनकी भी ज़िंदगी बदल रहे हैं
साथियो आज की तारीख में खेती को हम जितना आधुनिक विकल्प देंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगी उसमें नयेनये तौरतरीके आयेंगे नये इनोवेशंस जुड़ेंगे
मणिपुर की रहने वाली बिजयशान्ति एक नये इनोवेशन के चलते ख़ूब चर्चा में है उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्ट यूपी शुरू किया है
आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है
मेरे प्यारे देशवासियो मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूँ
एकसौएक साल पुरानी बात है
1919 का साल था
अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग़ में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था
इस नरसंहार के बाद एक बारह साल का लड़का उस घटनास्थल पर गया
वह खुशमिज़ाज और चंचल बालक लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था
वह स्तब्ध था यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है
वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था
उसी जलियांवाला बाग़ में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ़ लड़ने की कसम खायी
क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ हाँ मैं शहीद वीर भगतसिंह की बात कर रहा हूँ
कल 28 सितम्बर को हम शहीद वीर भगतसिंह की जयन्ती मनायेंगे
मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगतसिंह को नमन करता हूँ
क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता
इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गयी थी
शहीद भगतसिंह पराक्रमी होने के साथसाथ विद्वान भी थे चिन्तक थे
अपने जीवन की चिंता किये बगैर भगतसिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा
शहीद वीर भगतसिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बख़ूबी समझते थे
लाला लाजपतराय के प्रति उनका समर्पण हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव राजगुरु समेत क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ाव उनके लिये कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा
वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिये उन्होंने अपना बलिदान दे दिया वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना
मैंने NaMoApp पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पढ़ा
अजय जी लिखते हैं आज के युवा कैसे भगत सिंह जैसे बन सकते हैं देखिये हम भगत सिंह बन पायें या ना बन पायें लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम देश के लिये कुछ करगुजरने का ज़ज्बा जरुर हम सबके दिलों में हो
शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी
चार साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस शौर्य और निर्भीकता को देखा था
हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था हर कीमत पर भारत माँ के गौरव और सम्मान की रक्षा करना
उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जरा भी परवाह नहीं की
वे अपने कर्त्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सबने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आये
भारत माता का गौरव बढ़ाया
मेरे प्यारे देशवासियो आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है
02 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है
यह दिन माँ भारती के दो सपूतों महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है
पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं महात्मा गाँधी का जो आर्थिक चिन्तन था अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता समझा गया होता उस रास्ते पर चला गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती
गाँधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नसनस की समझ थी भारत की खुशबू थी
पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति का भला हो
वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है
11 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है
इस दिन हम भारत रत्न लोक नायक जय प्रकाश जी को उनकी जयंती पर स्मरण करते हैं
जे० पी० ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है
हम भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद करते हैं जिनकी जयंती भी 11 तारीख को ही है
नानाजी देशमुख जय प्रकाश नारायण जी के बहुत निकट साथी थे
जब जे० पी० भ्रष्टाचार के खिलाफ़ जंग लड़ रहे थे तो पटना में उन पर प्राणघातक हमला किया गया था
तब नानाजी देशमुख ने वो वार अपने ऊपर ले लिया था
इस हमले में नानाजी को काफ़ी चोट आई थी लेकिन जे० पी० का जीवन बचाने में वो कामयाब रहे थे
इस 12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की भी जयंती है उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया
वे एक राज परिवार से थीं उनके पास संपत्ति शक्ति और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी
लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन एक माँ की तरह वात्सल्य भाव से जनसेवा के लिए खपा दिया
उनका ह्रदय बहुत उदार था
इस 12 अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन दिवस होगा और आज जब मैं राजमाता जी की बात कर रहा हूँ तो मुझे भी एक बहुत ही भावुक घटना याद आती है
वैसे तो उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मौका मिला कई घटना हैं
लेकिन मेरा मन करता है आज एक घटना का जरूर जिक्र करूं
कन्याकुमारी से कश्मीर हम एकता यात्रा लेकर निकले थे
डॉ मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व मे यात्रा चल रही थी
दिसम्बर जनवरी कड़ाके के ठण्ड के दिन थे
हम रात को करीब बारहएक बजे मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास शिवपुरी पहुँचे निवास स्थान पर जा करके क्योंकि दिनभर की थकान होती थी नहाधोकर के सोते थे और सुबह की तैयारी कर लेते थे
करीब 2 बजे होंगें मैं नहाधोकर के सोने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजा किसी ने खटखटाया
मैंने दरवाजा खोला तो राजमाता साहब सामने खड़ी थी
कड़ाके की ठण्ड के दिन और राजमाता साहब को देखकर के मैं हैरान था
मैंने माँ को प्रणाम किया मैंने कहा माँ आधी रात में बोले कि नहीं बेटा आप ऐसा करो मोदी जी दूध पी लीजिए ये गर्म दूध पीकर के ही सो जाइए
हल्दी वाला दूध खुद लेकर के आईं
हाँ लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा वो सिर्फ मुझे ही नहीं हमारी यात्रा की व्यवस्था में जो 3040 लोग थे उसमें ड्राइवर भी थे और भी कार्यकर्ता थे हर एक के कमरे में जाकर के खुद ने रात को 2 बजे सबको दूध पिलाया
माँ का प्यार क्या होता है वात्सल्य क्या होता है उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ
यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूतियों ने हमारी धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है
आईये हम सब मिल करके एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर इन महापुरुषों को गर्व की अनुभूति हो
उनके सपने को अपने संकल्प बनाएं
मेरे प्यारे देशवासियो कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा मास्क अवश्य रखें फेस कोवर के बिना बाहर ना जाएँ
दो गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है आपके परिवार को भी बचा सकता है
ये कुछ नियम हैं इस कोरोना की ख़िलाफ लड़ाई के हथियार हैं हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन हैं
और हम ना भूलें जब तक दवाई नहीं तब तक ढ़िलाई नहीं
आप स्वस्थ रहें आपका परिवार स्वस्थ रहे इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद